वहा पर भी मुझे बहुत सारे यहाँ पर मुझे कुछ भगवान जी की मूर्ति देखने को मिल रहा है यहाँ लग रहा है यहाँ पर कोई शादी का फंक्शन होने वाला है वहा पर बहुत सारे फ़वारे बने हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ व्हाइट कलर की है कुछ नीले कलर की दिख रहे है।

वहाँ पर कुछ लाईट भी ऊपर की चमक रही है ऊपर त्रिशूल त्रिशूल सा भी वहाँ फीमेल भी दिख रहे है वहाँ भी कुछ मेल भी दिख रहे है कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं पोस्टर भी बहुत जाना अच्छा सीन देखने को मिल --

दिख रहा है बच्चे कुछ एक्शन पोज़ दे कोई दोनों उंगली करे हुए दिखाई दे रहे है अच्छे बच्चे लग रहे है दिखने में --

बहोत सारा मकान भी दिखाई दे रहा है अच्छा लग रहा है।